यहाँ एक बड़ा-सा गेट है गेट के अंदर बड़ा-सा पेड़ है जंगल भी है।

यहाँ एक बहुत बड़ा बंगला है बंगला के इधर बहुत सारे गाड़ी भी लगी है सामने एक पेड़ है बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ टंकी भी है|

बहुत लोग खेल रहे है मैदान का उस पार पेड़ का जंगल है।

यहाँ एक बड़ा-बड़ा पेड़ है बहुत बड़ा जंगल भी है बिच में रोड है ।

यहाँ एक नदी है बहुत ही बड़ा नदी नदी के उस पार बहुत ही बड़ा जंगल है नदी किनारे एक ही बिल्डिंग भी है।